यहाँ पानी देने के लिए बोर है यहाँ गेहूं लगते है।

यहाँ एक सूरज रोशनी दे रहा है सुबह सुबह की सूरज बहुत सुंदर होती --

हरे भरे हरियाली है हरे भरे पेड़ है।

नदी कितनी सुंदर लग रही है म नदी मे पानी बह रहा है हरी-हरी घास लगी हुई हैं।

यहाँ लोग झूला झूलते हुए मजे कर रहे है।

छोटे बच्चों के सब के--

अमन बुक खरीद रहे है बुक कॉपी पेंसिल पेन रेज़र एक्स्ट्रा सारी चीजे ।

एक ट्रेन दिखाई दे रही है यहाँ।

खूबसूरत हैयहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह हैलोग अपने फामलिओ के साथ घूमने जा सकते है।